का तार डाल रहे बड़ी बड़ी लाइटा लाग रही है दो तीन आदमी --

बरडे है एक बड्डो सो दिख रो है।